बैठा हुआ मोबाइल देख रहा है और यहाँ पे एक आंटी हाथ से कुछ दिखा रही है और सामने एक डस्टबिन भी दिखायी दे रहा है इसमें बहुत से पौधे दिख रहे है एक जगह बहुत ही अच्छी दिख रही है।

बंदे बाहर बैठे हैं एक के गले मे बगबा कलर का रंग पहना हुआ है। दूसरा फोन की तरफ देख रहा है।

बगल मे यहाँ पे दो बन्दे बैठे है और साइकिल लेके हैं और एक महिला आ रही है वहाँ से।

के दुकान भी है सामने सब्जी वाले का दुकान भी है। सामने दो बंदे भी दिख रहै है जो बाते कर रहै है और सामने एक स्कूटर भी लगा हुआ है और गाड़ी भी है और साइकिल भी है।

पारक में बहुत दरख्त हैं जिनमें बहुत फ़ौ उ म जिनमे बहुत फ्लावरस निकले है वाइट कलर के ज्यादा दिख रहे हैं।

कुछ लाइट इस साइड अ साइड में जल रही है और नीचे जो फ्लोर है वह भी बहुत चमक रहा है।